वो उस का बना है इसके पीछे हरे-भरे पेड़ हैं।

एक लाइट ग्रीन कलर का बना है और एक वाइट --

ये एक सिटी कार्ट है। यहाँ कुछ इस स्टेच्यू ड्रेसेस पहने खड़े हैं।

और बहुत आ रहे लोग जमा है चेयर्स पे रेड रिबन बंधे हैं और वाइट लाइट --

डेकोरेट किया हुआ है और एक --

यहाँ एक आदमी खड़ा होके फोटो क्लिक करा रहा है और नीचे को कुछ टंकियां रखी हैं।

यहां भी वी टू कार्ड है इसके बाहर लोग जमा हैं।

यह एक वेडिंग गार्डन है यहां पे सजावट हुई है।

और लोग भी जमा है साइड में बिजली के खम्भे --